शीशा लगा हुआ है जिसपे पीछे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं जिनको--

पीछे की तरफ कुछ खरपतवार दिखाई दे रहे हैं।

बगल में एक रेलिंग लगाया गया है आगे की तरफ एक बहोत बड़ा फील्ड दिखाई दे रहा है।

इस चित्र एक दुकान दिखाई दे रहा है यहां पे शीशे के टेबल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बीच में दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।